यह एक पुराना टनल है टनल है। बहुत जंगल हो गया है इसके आगे बहुत जंगल बना हुआ है पुराना बहुत पुराना टनल लग रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कुछ उठा रहा है डम्बेल वागेरह कुछ उठा रहा है बाहर भी पूरा ये वो सारा सामान रखा हुआ है जिम का।

यह अररिया महाविद्यालय अररिया का फोटो है। यहां कोई आदमी नहीं है। स्कूल शायद बंद है। अभी अंदर क्लास चल रहा होगा।

ये सरकारी स्कूल का बिल्डिंग है कन्या मध्य विध्यालय का। कन्या मध्य विध्यालय अररिया आर_एस का फोटो है ये। आगे में गेट बना हुआ है। गेट सही से नहीं दिख रहा है ।

ये स्कूल का है चार तल्ला पांच तल्ला है। यहाँ पे स्कूल का लोगो भी लगा हुआ है ।

और एक आदमी है वहां पे जो कि दुकान के साइड में खड़ा हुआ है और दुकान की तरफ देख रहा है । और दुकान मे बहुत सारा सामान है देख रहा है ।

खटाल में और एक बैनर अंदर में रखा हुआ है जोकि साफ़ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कोई दुकान--